यह एक चित्र है इस चित्र में गाय चारा खा रही हैऔर इसमें दो तीन गाय है और इनके पैर भी है।

और यहाँ तार भी नज़र आ रहे हैं और बहुत से लोग भी नज़र आ रहे हैं और कार भी दिख रही हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में बहुत सी सब्जियां दिखाई दे रही हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में कबाब नज़र आ रहे है और कुछ चीज़ भी नजर आ रही हैं और टोमेटो भी नज़र आ रहे हैं।

और इसमें बहुत सी चीजें भी रखी हुई हैं।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

यह एक चित्र है इस चित्र में स्टेशन नजर आ रहा है और इसमें कुछ लोग सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में बहोत बड़ा सा घर नजर आ रहा है और कुछ कार भीं रखी हुई दिख रहीं हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक ऑफिस नजर आ रहा है और कुछ कुर्सियां भी नजर आ रही है और कुछ तिरंगे भी नजर आ रहे है।

कोई लेटे हुए हैं जिनके पैरों में लगी हुई है और उनके पैर में पट्टी बनी है।

यह एक चित्र है इस चित्र में कुछ लोग बैट बॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं और यहां बहुत बड़ी जगह भी दिख रही है।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक बहुत बड़ी सी जगह नजर आ रही है और यहां एक किला भी नजर आ रहा है।

यह एक चित्र है इस चित्र में बहुत सी कुर्सियां रखी हुई नजर आ रही हैं और यहां पे भी नजर आ रहे हैं।